हो रही है यहां बहुत से लोगों की भीड़ नजर आ रही है।

यह एक बहुत बड़ा डैम दिखाई दे रहा है।

यहां दो कुर्सियों पर दो व्यक्ति बैठे हैं।